यह एक कंस्ट्रक्शन एरिया नजर आ रहा है जहाँ पे पीछे लेबर्स कार्य करते हुए दिख रहे हैं तथा इंजिनियर्स --

यह एक क्लास रूम का दृश्य नजर आ रहा है। जहाँ स्टूडेंट --

यह दृश्य एक वेयरहाउस का लग रहा है जहां पे विभिन्न प्रकार की पंखिया हैं तथा पीछे एक स्कूटी और तीन साइकल भी रखी हुई हैं और कुछ बोरो में सामान भी --